आउर ऊपर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

और कुछ कुर्सी दिखाई दे रही है और सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रही है।

और पास में एक मेज पर पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

और ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और पीछे कुछ बच्चे और औरत दिखाई दे रही है।

और ऊपर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।